यहां एक साड़ी की दुकान दिख रही है और नीचे एक--

पहले हुए है ये वूफर काफी अच्छे लग रहे हैं और ये ट्रक पर लगे हुए हैं।

यहां पर तीन कछुये दिख रहे हैं और एक पटरी लगी हुई है।

और यहां बड़े बड़े कछुए दिख रहे हैं बगल में मिट्टी का मैदान भी है और गुलाबी रंग का एक बिल्डिंग भी है।

यहां पर ऊपर एक बिल्डिंग है और सफेद रंग की दिख रही है।

ये गौतम बुद्धा की मूर्ति है बगल में किनारे एक रानी और एक सेनापति भी है।

गिरा हुआ है रोड पर काफी गंदगी है और आसमान बिल्कुल साफ लग रहा है।

ये एक कारपेंटर की दुकान है यहां पर बेड और सोफे रखे हुए है पीछे अलमारियां भी दिख रही है।

ये एक मैरिज हॉल है जहां पर लड़कियां बैठी हुई है।

आसमान बिल्कुल साफ हैं देखने में यहां लोग बहुत खुश लग रहे हैं और ऐसा लग रहा है मंदिर के दर्शन--

मिट्टी डली हुई है काले रंग की मिट्टी दिख रही है ऐसा लग रहा है आसमान में धूप है पर यहां कुछ कुछ छांव जैसा आनंद आ रहा है।

लोहे की रॉड पर लिखा हुआ है और यहां काफी सारे सामान रखे हुए हैं।

ये एक फूलों की दुकान है जहां शायद प्लास्टिक के फूल दिखते है।

काउंटर पर एक पंख लगा हुआ है और एक कापी और रजिस्टर भी रखा हुआ है।

यहां पीले रंग का गेट लगा है और सफेद रंग की लाइटे लगी हुई है।

लेकिन ये बहुत गहरा है और यहां पानी का बहाव बहुत ही हल्का है।

और ऐसा लगा रहा है जैसे बाग के बीच में ये डैम बनाया गया है।

और साथ ही यहां पर एक बोर्ड लगा हुआ है और बगल में यहां पर कुछ लिखा हुआ है।

एक फोटो लगा हुआ है और एक सोफा भी लगा हुआ है।

अ धूप बहोत है और परछाई भी नहीं दिख रही है।

बगल में एक सफेद रंग का गेट भी है और स्कूटी नीले रंग की है गाड़ी लाल रंग की है।

और बगल में यहाँ पर देखने में आसमान बिलकुल खाली है और बहोत बड़ा पेड़ लगा हुआ है साथ ही यहाँ पर बहोत सारी चीज़ें हैं।

और रोड के बीच में यहां पर बहुत सारी बिल्डिंगें बनी हुई हैं।

यहां एक बहोत बड़ा पेड़ भी है और उस तरफ देखने से यहां पूरा बगीचा ही लग रहा है।